बहुत सारे लोग है जो श्रद्धालु लोग आए हुए है पूजा पाठ करने के लिए |

ये रोड है। इस रोड पे जाम लागल है। बोहोत सारे गाड़ी जाम में फंसा हुआ है ।

वैसे करके एकदम सिर्फ चारो साइड से लाइट बल्ब लगा हुआ है जो उजला कलर का बोल है |